आ घर के अंदर दोकान खोले हुआ हैं कैलेंडर टंगी हुई है।

और वो बॉडी खोल के दिखा रहा है । बॉडी है बना रहा है । जिम क्लब का सीन है|

और इस ए एक स्कूटर है ओ तीन तल्ले मकान बन रही हैं ऊपर सेंट्रिंग करके छुटा हुआ है।

ये ई-रिक्शा है फिरोजी कलर का ई-रिक्शा दुकान के सामने लगा हुआ है शटर बैगनी कलर का है|